ये सो सामने आप देख रहे है ये सामने एक अ शोरूम है कम्प किसी किराने का दुकान या फिर किसी चीज का शोरूम है वहां की ये तस्वीर ली गई है।

यहां पर जो एक यह तस्वीर है यहां पर सभी लोग अपनी बाइक से और कुछ लड़कियां भी आई हुई है तो यहां पर सारे स्टूडेंट है।

ये जो है हमरी जो मशीन है जो हम लोग सुबह-सुबह मॉर्निंग में वाक करते है तो हम लोग इस मशीन के ऊपर भी चल के हम लोग वाक कर सकते है।

काफी सुंदर हरी मिर्ची है उस हरी मिर्च को आपलोग खा भी सकते है कितनी है और ये बहुत ज्यादे तीखी भी होती है कड़वी भी होती है।

किसी मॉल की तस्वीर है और यहाँ पर जो लिखा हुआ है जो मैटेरियल रखे हुए हैं उनकी रेट भी लिखे हुए हैं।

यहां पर कुछ महिलाएं क्रिकेट खेल रही हैं और अपना प्रैक्टिस कर रही हैं किस तरह से बल्लेबाजी की जाती है वह देखिए।

पीछे में महिला एक विकेट कीपर भी कर रही है काफी सुंदर महिलाएं यहाँ पर प्रैक्टिस कर --